बहोत बड़े बड़े छोटे छोटे पत्ते हैं बहोत सारे फूल ल पत्ते मे पेड़ पौधे हैं साइड में--

एक बीचो बीच रोड है बहोत सारी ट्रैफिक लगी हुई है गाड़ी इधर जा रही है राइट लेफ्ट मुड़ रही हैं।

ये एक बहोत बड़ा सा तलाव है तलाव के बीच में तलाव में से खंभा लगा हुआ है।

ये एक शॉप है यहां पे कपड़े की दुकान है यहां पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं बॉक्सेज बना के।

इधर उधर सामान फेंका गया छोटे छोटे बॉक्सेस सामान रखे गए हैं।

दो आदमी खड़े हैं और कार्क है कार के ऊपर लटकाया गया है और उसके--

बहोत बड़ा खुला वातावरण मौसम बहोत ही साफ है बड़ी बड़ी बिल्डिंग से बीचों बीच--